आ जमीन पे हरे रंग की --

दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे डब्ल्यू.टी.एम. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करके बोर्ड लगा हुआ है।

आ नाच रहे है और यहाँ पे दो लड़कियां एक सूट --

इस चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पे आ उजले रंग की बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रह है कांच भी दिखाई दे रहे।

इस चित्र मे हम देख सकते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग । वो बिल्डिंग माईगनों सिनेपलक्स करके है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं। दुकान या लाल रंग की दुकान दिखाइ दे रहा है बाल दाढ़ी स्पा एंड सलून करके।

और यहाँ पे काले रंग के और लाल रंग के आ मशीन रखे गए है जिम के और यहाँ पे साइकिल --

एक बच्ची को हाथ पकड़ते हुए खड़ा हुआ है पानी के बीच।